यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

पीछे बहुत बड़े पहाड़ हैं।

इसमें दो कंप्यूटर भी रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक पंखा लगा हुआ है।

इस तालाब के बगल में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इन गिलासों को टेबल पर रखा गया है।

यह दृश्य सुबह का है।

ए_टी_एम लाल रंग का है।

मैदान हरे रंग का है।